कुछ लाइट्स लाइट लग रही हैं जिम कर जिम में हैं एक लड़का सामने खड़ा है हाथ में फोन है।

अ तीन चार ऑटो दिख रहे हैं एक मशीन है दो जेंट्स दिख रहे हैं जिन्होंने बैग टांग रखे हैं।

और रोज है एक ट्री है।

पानी का पाइप है गमले हैं।

और ट्रीज हैं चेयर है धूप छा है।

आं कुछ प पेड़ प फूल पौधे पत्तियां बेच रहे हैं कुछ बोल रहे हैं आपस में कुछ बैठे हैं कुछ कार्य कर रहे हैं।

सामने हरिनगर रेड कलर से लिख रहा है एक बोर्ड लग रहा है खंभा है टीन है।

एक रूम में एल_सी_डी लगी हुई है बोर्ड हैं लाइट्स हैं।

चिनाई का काम चल रहा है चौकट लग रही है दो जेंट्स हैं जीने की तैयारी हो रही है और--